इस तस्वीर में हमें एक कार्यालय दिखाई दे रहा है यह तस्वीर कार्यालय के बाहर से ली गई है हमें बाहर पर इसका नाम भी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है।